इस इमेज में बहुत सारी कैंडल्स जली हुई दिखाई दे रही है बहुत सारी कैंडल्स को जला के दिखाया हुआ है।